यह फोटो हमें किसी टॉय शाॅप की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हमें बहोत सारे लोगों की पीठ दिखाई दे रही है इस मे सबसे आगे--

कुछ लोग एक कपड़ा पीले कलर का कपड़ा डाल कर खड़े हैं।

दुकान के अंदर खड़ा है और उसके बाहर और एक आदमी खड़ा है दुकान के बाहर--

यह फोटो किसी कैफे की लग रही है जो कि बैलून से सजाया गया--

जिसमें एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है।

किसी बैंक ऑफ इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है इसपर लिखा हुआ है।

जहां पर हमें एक मरीज लेटा भी दिखाई दे रहा है और वहां पे एक--

इस फोटो में ही बहुत ही खुला एरिया सा दिखाई दे रहा है।

जहां पर हमें एक बेड डाला दिखाई दे रहा है जिसपर हरे रंग की चादर बिछ गई है।

भारत का दिखाई दे रहा है जहां पर हमें बहोत सारी झूले दिखाई दे रहे हैं यहां पर सभी झूले नीले कलर की दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में हमें --

और ब्लू कलर की पेंट पेहनी हुई है।

जिसमें हमें छोटा सा टेंट सा लगा दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें पंखे भी लगे दिखाई दे रहे है यह रूम बिल्कुल सफेद कलर का दिखाई दे रहा है और यहां पर एक ए_सी भी लगा हुआ है।

और यहां पर दो बहुत बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो हमे किसी कॉलेज का दिखाई दे रहा हैं जोकि बहोत ही बड़ा ल--